पेड़-पौधे है पीछे भी पेड़-पौधे है इधर बस है इधर बाइक है।

सेल लगा हुआ है ढेर सारे बच्चें बैठे हुए हैं।

ये जो दृश्य है देखिए ये सदर अस्पताल गोपालगंज लिखा हुआ है अस्पताल का दृश्य है इसमें --

वह इसमें पेशेंट दिखाई दे रहा है पेशेंट बहुत-दूर दिखाई दे रहा हैं।

ये जो द दृश्य है देखिए इसममें ढेर सारे अनेको प्रकार के मछली है गराई है।

सेल करने के लिए मतलब बेचने के लिए आये है कुछ कस्टमर है।

और सरस्वती माता को जैसे पैर पैर स्पर्श किए हुए है अपना फोटो क्लिक कर रहा है बच्चा।